बगल में एक दीपक प्रज्वलित हो रहा है।

झूले पे हम स्लाइड करके नीचे जा सकते हैं।

यों कुछ गमले साइड में नीचे रखे हुए हैं।

कुछ पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते जो कि हरे कलर के हैं दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक आकृति बनी हुई दिख रही है।

आकृति एक दीवाल नुमा ढांचे पर बनी हुई है।

जिसमें नीचे सरदार जी दिख रहे हैं।

ऊपर जाने के लिए लोहे की सीढ़ियां नजर आ रही है।

रेल कि पटरी दिख रही है।

यहां पर चार बसें खड़ी हुई हैं।

और उन्हीं दो प्लेट में दो चम्मच रखी हुई है।

कुछ बड़े पौधे भी बगल में लगे हुए हैं।

पार्क के पीछे अपार्टमेंट बने हुए हैं।

एवं आगे चारों तरफ से पेड़ से घिरा हुआ है।

और दीवाल पर एक घड़ी नजर आ रही--

पुरुष ने कोट पैंट पहन रखा है।